एक रास्ता है एक पहाड़ बहुत ऊंचा है अगल बगल पेड़ है ऊपर साइड तार है।

बगल में दुकान है उपर साइड बैनर लगा हवा है अगल बगल छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर है।

रास्ते पर बहुत सारी दुकानें है बहुत सारे ठेले है अगल-बगल नदी है नदी के आसपास बहुत धूप है।

रास्ते पे मकान है मकान थोड़ा भद्दा दिख रहा है अगल बगल गार्डन है गार्डन में फ छोटे छोटे बड़े बड़े फूल लगे हैं दो एक ए लेडिज एक दो लड़की खड़ी हुई हैं।

एक टॉकीज है टॉकीज में बहुत सारे डी.जे. लगा है डूअल भी है सिंगल बे बहुत सारा लाइट लगा है एंगल लगा हुआ है।

रास्ते पे दो पुलिस वाले खड़े हुए है चार पांच कमरा है।

टीचर उधर साइड मे एक सफेद कलर का कपडा पहने हुई हैं बगल पे कोई चित्र बना रहा हैं कोई ड्रॉइंग बना रहा हैं कोई पेंसिल हाथ मे लिया हैं बगल मे आ जाली टाइप का लगा --